meet the gimp में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
resolutions के लिए image पर जाएँ image properties और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस image की चौड़ाई 508 pixels और 72 by 72 ppi है
ppi का मतलब pixels पर inch होता है
अतः यहाँ मेरे screen पर एक inch में 72 pixels है
ppi मूलतः dpi dots पर inch के समान ही है
और उचित resolution printing के लिए महत्वपूर्ण है
ये बात करते हैं कि आप paper के एक inch पर ink की कितनी dots डालते हैं
एक inch लम्बी line में लगभग एक inch पर 300 dots हैं और ये in dotsdots printed हुए हैं कि आप सिर्फ एक line देखते हैं न कि dots
अगर कोई image print करना चाहता है तो वो image को 300 ppi में होने के लिए कह सकते है या वो कह सकते है कि हमें 150 dpi में इस image की ज़रुरत है या quality काफ़ी अच्छी नहीं होगी
अतः आप इस बारे में क्या कर सकते हैं
आप इसे बहुत आसानी से बदल सकते हैं
image पर जाएँ scale image
इस dialog में आप width height देख सकते हैं जो हमने बहुत बार प्रयोग किये है
आप यहाँ x resolution x resolution भी देख सकते हैं और value 72 pixels पर inch है और मैं इसे pixels पर millimeter या pixels point pica में बदल सकती you
लेकिन इसे pixels पर inch ही रखते हैं
x resolution और y resolution की value 72 ppi है और मैं इसे 300 ppi से बदलती हूँ
और अब मैं image को scale करती हूँ और आप देखते हैं कुछ भी नहीं बदला है सिवाय इसके कि जब मैं image properties पर जाऊं
यहाँ आप देख सकते हैं कि अब resolution 300 by 300 ppi में बदल गया है और print size लगभग 3 बड़े stamps के बराबर है
जो 4 by 3 cms के लगभग है
यह एक बड़ा stamp है
image में resolution को छोड़कर मैंने कुछ भी नहीं बदला है
screen पर कुछ भी नहीं बदला है यह अभी भी 72 pixels पर inch है
यह number मूलतः अर्थहीन है
इसका अर्थ है अगर आपको it हो कि आप 300 dots पर inch में image print करना चाहते हैं यानी वास्तव में एक अच्छी value और आप इसे मानिये 10 by 15 inch में चाहते हैं तो आप देखते हैं कि ये pixels काफ़ी नहीं हैं
अतः आपको pixels बढ़ाने ही हैं
लेकिन printer के लिए image की quality निर्भर करती है कि आपके पास उस size me कितने pixels हैं या printer होने वाला वो क्षेत्र कितना लम्बा या कितना बड़ा है
और वो property printer से set की जाती है और यह ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे image में set करना ही है
लेकिन अगर कोई आपको यह image 200 से 300 dots पर inch में set करने को कहे तो but ऐसा ही करें और इसकी चर्चा न करें
मैं show notes में इसके बारे में अर्थपूर्ण चर्चा पर कुछ links दूंगी आप इसे वहाँ देख सकते हैं
अगर मैं bill boards के लिए इस image को चाहती हूँ तो मुझे इस image को scale करना है
मुझे लगता है bill board के लिए अच्छी value 5 dots पर inch होगी
image को scale करें और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बदला है लेकिन अब image properties में print size 100 by 76 inches यानी 2 m 50 है जो कि यहाँ इस image के साथ एक अच्छा poster होगा
यह resolution यहाँ हमारे लिए मूलतः अर्थहीन है जब तक आप अपने आप print न कर लें
अधिक जानकारी के लिए